जैसा कि आप देख सकते है यह ए. टी. एम है और यहाँ पैसा निकलते हैं।

ऑफिस मे चेयर मे बैठते हुए नजर आ रहे है।